जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर एक आदमी है ताजिया सा रखा हुआ है और वो आदमी खड़ा हुआ है।

उसके सर पर बंधा हुआ है और लड़का खड़ा हुआ है जिसने कुर्ता पहना है।

और कुछ औरतें हैं आदमी हैं पीले हरे नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं ये लोग बहुत सारे फूल हैं।

जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं और लाल पीले हरे से फूल भी हैं।

आदमी भी है यहां पर कुछ मंदिर सा बना हुआ है फूल वगैरह भी रखे हुए हैं यहां पर।

जिम की कुछ मशीनें दिखाई दे रही हैं औरतें बैठी हुई हैंऔर ऊपर पंखा लगा है गुब्बारे लगे हैं।

सा बना हुआ है ए_सी लगी हुई है ऊपर छत दिखाई दे रहा है और एक मेज रखा है जिस पर कुछ--

मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर मुझे दो बंदे दिखाई दे रहे हैं और सामने बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक--

मैं यहां पर देख पा रही हूं कि एक बड़ा सा स्टोर रूम सा है जहां पर बहुत सारी गुड़िया लगी हुई है।

और बहुत सारी डॉल्स लगी हुई हैं किताबें लगी हुई हैं बुक्स लगे हुए हैं और--

मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है और बहुत चार गाड़ियां लगी हुई है।

और यहां पर दरवाजा भी बना हुआ सा दिखाई दे रहा है ऊपर रात--

अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अंगूर है या फिर जामुन है लेकिन ये एक कैरेट में भरा हुआ है और--

और यहां पर बहुत ऊंची सा इमारत है और पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़ हैं जिनके पत्ते हरे-हरे से दिखाई दे रहे हैं खंभा दिखाई दे रहा है।

अ पार्क दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पेड़ हैं बहोत सारे और पेड़ों के पत्तें ये खजूर के पत्तें लग रहे हैं और पीछे की तरफ भी कुछ पेड़ हैं और हरे-हरे से दिखाई दे रहे हैं।

कुछ कत्थे रंग में है कुछ सफेद रंग में है ऐसे टाइप के पूरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और हल्का सा आसमान का--

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर एक बड़ा सा रूम है और यहां पर लाइटें जल रही है ऊपर छत दिखाई दे रहा है सामने की तरफ भी कुछ डिब्बे रखे हुए हैं।

पूरा दृश्य है और ऊपर फादर के उसका यहां प्लस का निशान बना हुआ है और--

हां जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं यहां पर एक डांस क्लासरूम दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारी लड़किया--

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक बस दिखाई दे या है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा --

कुछ लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि मुझे--

गिलास रखे हुए हैं और दीवारें दिखाई दे रही हैं ए_सी लगा हुआ है पर्दा लगा हुआ है।

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि मुझे एक बड़ा सा बिल्डिंग यहां पर दिखाई दे रहा है खिड़कियां बनी हुई है।

और कुछ तार दिखाई दे रहे हैं राजवेश्वर राजेश्वर कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है यहां पर।

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर बड़े-बड़े से बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग--

और यहां पर उसने अपने कंधे पर एक अंगोछा डाला है।

अ डांस शायद कर रहे हैं ऐसा नजर आ रहा है ऊपर छत दिखाई दे रहा है दीवार दिखाई दे रही है खंभे दिखाई--

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है ऊपर--

लाइटें दिखाई दे रही जो कि अंधेरे में है और यहां पर कुछ झोला दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल पंप का मशीन यहां पर लगा दिखाई दे रहा है।

खंभा भी दिखाई दे रहा है बिजली की तारे दिखाई दे रही हैं बिजली का खंभा दिखाई --

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर एक--

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां पर कुछ--

यहां पर मुझे एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और नदी में बहुत सारा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहां पर पूल सा बना हुआ है ऊपर आसमान सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।

मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर मुझे बहुत सारे हरे हरे से पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बीच में ईंटी की छोटी-छोटी सी दीवारी बनी है जिसमें पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

और हरे-हरे से बहुत सारे घास दिखाई दे रहे हैं पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है।

जैसे कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि एक बड़ा सा बिल्डिंग है और--

जैसे कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि यहां पर एक डांसिंग क्लास दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं और नीचे फर्स दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा यह फैक्ट्री दिखाई दे रहा है पीछे कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है टीन शेड छत दिखाई दे रहा है।

लाइट जलता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारी रोशनी भरी है।

हां कुछ टीन शेड रखे हुए हैं और यहां पर--

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जो कि नीले रंग का है नीचे की जमीन दिखाई दे रही है जो कि पीला-सा लग रहा है।

जैसा कि मैं यहां पर देख पा रही हूं कि मुझे एक बड़ा सा रास्ता दिखाई दे रहा है कुछ दूर पर हल्के से पेड़ दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे बिजली के खंभे दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर एक बिजली का तार दिखाई दे रहा है।

जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वहाँ पर मुझे फेडरल बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि फोटो ले रहा है अपने मोबाइल फोन --